जिस पर बहुत सारी सामान रखी हुई है और उस टेबल का रंग सफेद है और मुझे एक चीयर दिख रहा है जिस पर बहुत सारे चक्के लगे--

मुझे एक बड़ा सा पोस्टर दिख रहा है जिस पर लिखा है सिटी फिटनेस जीम प्रो और मुझे बहुत सारे डंबल्स दिख रहे हैं और ग्रीन कलर का कारपेट दिख रहा है।

यहां पर मुझे एक बड़ा सा कैफे दिख रहा है और उस कैफे का नाम मुझे इंडियन कॉफी हाउस दिख रहा है और मुझे उसके ऊपर एक और बैनर दिख रहा है जिस पर लिखा है स्मार्ट स्मार्ट किड्स --

यूनो कैश और मुझे बहुत सारी सीढ़ियां दिख रही है और इस बिल्डिंग का रंग नीला दिख रहा है और नीचे बहुत सारे लोग दिख रहे हैं और एक औरत भी दिख रही है और बहुत सारी गाड़ियां दिख रही --

बड़ा सा पीला सा बॉर्डर दिख रहा हैऔर यह एक फोटो फ्रेम जैसा बना हुआ है और--

यहां पर मुझे एक बड़ा सा म्यूजिक का दुकान दिख रहा है और मुझे--